एक सड़क पर कुछ गाड़ियां और रिक्शे चल रहे हैं सामने की तरफ एक पेट्रोलियम और एक इमारत है।

स्कूल के बाहर वालदैन अपने बच्चों को लेने के लिए खड़े हैं।

पत्तों और दरख्तों का सब्ज रंग और खिल उठा है।

इस जमात में कुर्सियां और मेज आपस में जुड़े हुए हैं।

ये एक दफ्तर है जिधर लोग काम करते हैं लोगों की काम करने के लिए टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर रखे गए हैं और उनको--